नीले रंग का एक बड़ा सा मकान नजर आ रहा है।

बहोत सी यहां में खिड़की दरवाजे नजर आ रहे हैं।

यहां फूलों से सजावट किया गया--

जिनपर हमें कुछ चेयर दिख रहे हैं।

एक दुकान नजर आ रही है।

सादी है यहां पर कुछ खंभे नजर आ रहे हैं और कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

वाकर के ऊपर एक गुलाबी रंग की डाल रखी हुई है।

एक बड़ा सा बागान है जिस पर कुछ गमले लगे है।

भूरे रंग के बड़े बड़े टेबल है कुछ चेयर भी लगे हुए हैं।

टेबल के ऊपर कुछ बोतले--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

जिस पर लाइट जल रही दिखाई दे रही है।

एक पोखर दिखाई दे रहा है।

कुछ गंदगी जमी हुई दिख रही है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं सुखी डालियां अभी अभी नजर आ रही है।

लाल रंग का एक छतरी जैसा फवारा है।

थोड़ा सा हॉल यहां पर नजर आ रहा है।

उर्दू में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।

सामने किताबों का ढेर लगा हुआ--

सामने एक बड़ी सी नदी को हम देख रहे--

जिसके अंगन में हमें बहोत से फूल नजर आ रहे--

साथ ही एक सफेद रंग का शटर लगा होगा--

कुछ बैग यहा पर रखे हुए हैं।

गेहूं की बालियों का यहां पर पुतला बना है।

बड़े बड़े दिए बने हैं बीच में एक नल है।

सामने एक मकान को देख रहे है।

दरी बिछा कर बहुत से लोग यहां हमे योगा करते दिख रहे हैं।

स्टेज का रंग गोल्डन और पिंक है।

सामने सफेद रंग का एक ए_सी नजर आ रहा हैं।

बहुत से लोग यहां पर लगेज के साथ नजर आ रहे।

बीच में हमें एक मूर्ति नजर आ रही है।

सामने कुछ बडी इमारतें बनी हुई--